जिसकी हालत खराब ही है शायद इसपे कोई रहता नहीं।

और मैकेनिक उस गाड़ी को ठीक करने की कोशिश कर रहा है।

एक ट्रक उन्हीं के सामने रुका हुआ है।

एक रोड की जगह पर पानी इकठ्ठा हुआ है।